यहां पर एक व्हाइट रंग की बस है।

और पीछे एक गेट और है बराबर मे--

और दीवार पर अमूल दूध लिखा हुआ है।

यहां पर एक आदमी सब्जी बेच रहा है।

यहां पर एक लोहे का खंभा है।

और साइड में एक बिजली का स्विच लगा हुआ है।

पांच गमले रखे हुए हैं।

ओ ग्राउंड में घास है।

और काले रंग का एक गेट लगा हुआ है।

जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा।

पेड़े भी लगे हुए है और पीछे की साइड पर मकान है।

और बहुत सारी चीज रखी हुई हैं।

इसमें एक आदमी बैठा है और कुछ सामान भी है।

यहां पर एक सुमित पब्लिशिंग हाउस है।

और कोने में एक पंखा लगा हुआ है।

यहां एक केक रखा हुआ है।

जिस में साइड पर बिस्कुट लगे हुए हैं।

यह एक लकड़ी की दुकान है।

और पीछे की तरफ लकड़ी की चौखट रखी हुई है और बहुत सारी लकड़ी हैं।

यहाँ पर ब्लैक रंग का पत्थर लगा हुआ है।

यहां पर मशीनें रखी हुई हैं।

और बिजली के स्विच हैं।